यहां बहुत से घरें हैं यहां घरों के आगे कपड़े टांगे गए हैं और एक सफेद कलर की गाड़ी है।

और वहां पे कई सारे आदमी हैं।

यहा स्टेशन के आजू बाजू कई सारी इमारतें--

रनिंग के लिए है साइकिल की है ये यह सब--